पुराने जमाने में बड़े बड़े हुक्का पीते थे और उनकी जन्म होती थी।

मोमबत्ती डालकर रखी हुई है और यहां पर ऐसे बहुत सारे रखे हो है जिसमें चिलम के अंदर में मोमबत्ती डालकर रखी गई है।

ये किसी बीज फारम का है जगह है।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

यह फोटो किसी ढाबे की है जहां पर एक बोर्ड लगाया गया है जिसपे लिखा हुआ है।

आइसक्रीम की रेडी दिखाई दे रही है जो कि दोनो का कलर रेड है।

और यहां पर बहुत सारी बाईकें भी खड़ी की गई है और यहां पर एक कार भी खड़ी --

जिसमें एक एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है।

और यह गेट बहुत ही चमक रहा है और गेट --

यह फोटो एक योगा क्लब का है जिसमें--

हाफ पर ब्रांडेड टी शर्ट और लोअर पैंट सभी तरह तरह की चीजें--

यहां पर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें एक लड़की खड़ी है और उस पर--

इसका रूफ को अभी तैयार होना बाकी हैं।

इस वक्त ये बिल्कुल खाली पड़ा है यहां पर हरे कलर के--

शॉर्ट्स पेहरा हुआ है और ऊपर ए अलग अलग कलर की टी शर्ट पेहरी हुई है।

अ निला लोअर पहैर कर नीचे चप्पल पहैर कर बैठा है और दूसरा आदमी--

उसके सामने एक दुकान है जिसकी दुकान का बोर्ड लगा हुआ है।

डील सी फटी से इसका ड्रेस है सिंघा--

यह फोटो एक बस की है जो पूरी ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है।

और एक बस के बाहर एक आदमी खड़ा है जो--